माधव स्टेशनरी की दुकान हैं और यहाँ पे कुछ हमें जिओ के आइटम्स देखने को मिलते हैं।

और यह चर्च ईसाईयों का होता है जैसे हिंदुओं का मंदिर --